ये हमारा जहानाबाद स्टेशन है जो और यहाँ पर ट्रेन आ रही है।

और यहाँ इसके अंदर काफी अच्छे फूड बनते हैं डिलिशस फूड और यहाँ पे बहुत सारे टेबल चेयर्स भी लगे हुए है।

डिलीशियस फ़ूड यहाँ पे काफी अच्छे डिज़ाइन है इंटीरियर डिज़ाइन ले रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी वैगरह भी लगे हुए हैं।

यह हमारा फेमेली रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफी अच्छे ये काफी अच्छे लइटिंग्स वैगरह भी लगे हुए हैं यहाँ --

ये हमारा जहानाबाद कोर्ट है जहाँ पे लोग अपने किसी भी चीज के लिए फाइट करते हैं जहाँ पे काफी भीड़ होती है।